अथा दिख रहा है वो आदमी पैसा गिन रहा है चंदन टीका लगाया हुआ है। सेब भी लगे हुए हैं उसके बगल में।

एक आदमी जो है वो टोपी लगा के पॉकेट में हाथ वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है और ये कोई बर्थडे की तैयारी कर रहा है।

पेड़-पौधे नजर आ रहें हैं। ये बहुत अच्छा दृश्य है।